गाये एक रूम मे बंधी हुई है गाये पर रस्सी बंधी हुई है गाये के सामने चारा रखा हुआ है--